'' और कुर्सी रखी हुई हैं'''' यहा सारे बड़े-बड़े लोग आने वाले हैं अच्छे से मतलब मीटिंग वगेरह --''

यह फील्ड है। बच्चे यहा खेलने आते है। साइकिल खड़ी है और बच्चा बैठा है।

ये किसी होटल मे रखे हुए हैं।